और मिट्टी में बहोत ज्यादा टक टाक सभी रखा हुआ है।

और एक स्कूल ड्रेस पहन के लड़की हाथ उठा रहा है पेपर लेकर ऊपर में।

इस फोटो मुझे एक घर दिखाई दे रहा है और वो घर में दो लड़कियां भी बैठा हुआ है।

और सोफा सेट भी दिखाई मिल रहा है।

उस घर में तीन इंसान दिखाई दे रहे एक लड़की और दो लड़का वो लड़की का फेस को भी ढका हुआ है।

और एक चेयर भी ब्लैक कलर का दिख रहा है।

और एक बड़ा सा पेड़ भी दिखाई मिल रहे है।

और एक काला कलर का टेबल दिखाई मिल रहे उसमें ताल भी रखे हैं और एक रूमाल भी।

अंदर में एक लड़का बैठा हुआ है चेहरा को ढक के।

फ्लावर पॉट भी वाइट कलर का तीन ठो रख के दिखाई दे रहे हैं।

सीढ़ी भी ऊपर जाने वाला आधा करके दिखाई मिल रहा--

और उसका ऊपर में एक क्लॉक भी दिखाई दे रहा है और वहां में दो स्टैचू काला कलर का भी दिखाई दे रहा है।

वो एक काला बैग के भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत ज्यादा डी_जे दिखाई दे रहा है रखने वाला।

उस साइड में व्हाइट कलर का लाईट बल्ब भी जल रहा है।

और एक दरवाजे से जैसा भी दिखाई दे रहा है साइड में--

और एक लंबा सा एक बंबू भी दिखाई मिल रहा है।

ये घर का कलर भी येलो व्हाइट और ऑरेंज कलर का है।

गोल्डन वाइट कलर का है और एक लाठी जैसा व्हाइट कलर का कुछ रखा हुआ है।

व्हाइट कलर भी दिखाई दे रहा है।

और एक पंखा भी दिखाई मिल रहा है और दूर में एक लड़का ऑरेंज कपड़ा पहन के भी--

और एक बोर्ड में कैटलिस्ट क्लास बोल के लिख के दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का खड़ा होके दिखाई दे रहा है।

और फेस करके और दूर में बहुत ज्यादा पेड़ जंगल लोग दिखाई दे रहा है।

फोटो मुझे बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है और दो फादर भी दिखाई मिल रहा है।

ओ फादर जो हाथ में फोन जैसा कुछ पकड़ के भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बहुत बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट कलर का है और उसमें बहुत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है।

और इंसानों भी बहोत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और एक वाल मे उपर मे एक बोर्ड लगाया हुआ है रूपीस फाइव हंड्रेड सेवेन हंड्रेड कर के।

में मुझे बहुत सारा शू और कपड़ा दिखाई दे रहा है और स्टैचू भी--

इस फोटो में मुझे दो इंसान दिखाई दे रहा हैं एक लड़की एक लड़का दोनों फेस को ढका हुआ है।

लड़का ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पेहना हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है।

और वो पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

चेयर सब भी रेड कलर का रखा हुआ है।

और एक कार भी व्हाइट कलर का--

और घर भी वाइट कलर का दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा।

और एक बच्चा भी दिखाई दे उसका फेस पूरा ढक के है और सब लोग मोबाइल निकाल के वीडियो कर रहा हैं।

सोफा सेट भी दिखाई मिल रहा है ब्राउन कलर का--

इस घर में एक लड़की काला कपड़ा पहन के फेस को ब्लर कर के दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बहुत ज्यादा मोबाइल दिख रहे है वीवो कैमरा एंड म्यूजिक लिखके भी--

और इस फोटो में बहुत ज्यादा अलग अलग मोबाइल दिखाया गया है।

और आगे में एक वाइट कलर का बोर्ड भी लगाया हुआ है।

और वहां पर बहुत सारा खा रहा हूं कि गीतार पकड़ के सबको फेस को ढक भी दिखाएं मिल रहे हैं।

फोटो में मुझे दो काला कुत्ता और एक दिखाई मिल रहा है।

और दूर में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है तीन चार पांच ठो--

इस फोटो में मुझे बहुत सारी लड़की योगा कर के दिख रहे हैं सब का फेस को ढका हुआ है।

और एक बोर्ड भी टागा हुआ है जो कि वहां पर ब्लू कलर का है।

और पेड़ सब भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।

और एक ए_सी व्हाईट कलर का दिखाई दे रहा हैं और सी_सी कैमरा भी और स्विच बॉक्स भी दिखा रहा हैं।

और सॉस भी रखा हुआ है और एक आधा चेयर दिखाई मिल रहा है।

और छोटा सा पत्थर भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे और ऊपर में एक बड़ा पत्थर भी है।